ये एक पार्क है जिसमें काला ग्राम लिखा हुआ है और ऊपर पेड़ पौधे लिखे लगे हुए हैं।

ये एक पार्क बना हुआ है ये जिसमें एक रेड कलर का फूल लगा हुआ है। पौधों का --

और एक ये ‌ग्रीन कलर का पार्क है जो खेलने के लिए इसमें आस पास लोग खड़े हुए हैं।

इसलिए यहा पे एम्बुलेंस खड़ी हुई है चार या पाच और वाइट कलर की गाड़िया--

वो अलग डिजाइन की और उसके यहां पे येलो कलर की फूल लगी हुई--

एक फ्रूट्स मार्केट है जहां में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट लगे हुए हैं बनाना है एप्पल है ऑरेंज है और दो--

ये एक झूला है जिसमे बहोत सारे मेंबर्स बैठे हुए है जिसमे एक फादर एक सन बैठा हुआ है।

गेम चल रहा है और बहोत सारे खड़े हैं सर्दी का माहौल है जो गेट लगा रखी है।

टेबले रखी है और बहोत सारे इसमें कलर लाइटिंग वगैरा--